ये एक मंदिर है।

यहएक चौराहा है।

कार खड़ी हुई है।

ये लेक व्यू है।

यह एक चोराहा है।

सिग्नल पर एक एंबुलेंस --

टेरेस क्या व्यू दिखाई दे रहा है।

दिखाई पड़ रहा है।

गार्डन में हरियाली भी है।

दो गिलास भी रखे हुए हैं।

डोसा केले के पत्ते पर है।

यह एक रूम है।

सफेद रंग की--